जंगल है यह जंगल बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत हरी-भारी घास सब हैं कुछ वृक्ष भी हैं|

सुबह का समय है बहुत अच्छा वातावरण है।

यह मत्स्य गंगा का झील है।

चार टेम्पो है ब्लैक कलर का।

अ ओता सुंदर-सुंदर लाइट सब है।

रात का समय है बहुत अच्छा नजारा है ब्लू कलर का ई-रिक्शा है।

यह नदी है नदी में नाव है नाव में दो आदमी है बगल में पहाड़ है।

यह राइस मील है।

बाउन्ड्री है बाउन्ड्री के भीतर मे ट्रक है।

यहाँ पे कार ठीक करवाया जाता है।

और बगल में बाउंड्री है एक गाड़ी बगल में रखा है|